यहाँ पर एक गैलरी टाइप की बनी हुई है आ जिसमें बहुत सा खाली पड़ी हुई है बहुत लम्बी --

यहां पर आ--ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शोरूम है यह शॉप है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ बॉडी एक्सरसाइज मशीने रखी हुई है।

यहां पर एक बैंक है और बैंक में यहां पर कुछ एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है।

आ फूलों के द्वारा और यहाँ पे बहुत सारे रेड और वाइट और --

और जिसमें कुछ टमाटर ये पके हुए है कुछ कम पके हुए है कुछ रेड है कुछ ग्रीन टाइप के हैं |

यहाँ पर एक रोड है और रोड के किनारे से एक बड़ा -सा घना पेड़ अम लगा हुआ हैं ।

कटे हुए पतझड़ हो रहै है।

और दीवाली बिलकुल बेकार हो चुकी है क्ले की और गेट बने हुए है यहाँ पर कुछ क्ले के --

यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और जिस पर आ आ यहाँ पर एक रेल खड़ी हुई है ट्रॆन खड़ी हुई है यहाँ पर --

है पेड़ - पौधे लगे है और पानी ऊपर से गिर --

यहाँ पर किसी के अव फ़न्क्सन का सेलिब्रेसन किया जा रहा है आओ जोकि यहाँ पर रेस्टूरेन्ट वैगरह है यार अव कैफे हैं ।

यहाँ पर आ बुद्ध महाराज का स्टैचू बना है एक मूर्ति बनी हुई है और जिस जोकि यह एक पिलर ते बने हुए हैं ।।